थर्मल कुंडल इसकुल लिक्खा है कंपोनेंट्स मुजफ्फरपुर और पीछे वो --

ये एक रोड है रोड के बगल में एक दीवार है।

जिनकी अलग अलग सीटे हैं वॉश बेसिन --

और आस पास कपड़े टंगे हुए हैं और यहां पे दुकानदार बेच रहे हैं और उसको खरीदने वाले खरीद रहे हैं।

नर्सरी है यहां पे बहोत सारे अलग अलग तरह की पेड़ पौधे गमले हैं।

वहां पर एक साड़ियों की दुकान है। छापे वाली साड़ी मिलती है अलग अलग कलर की नीली है पिक है हरि है ऑरेंज है।

और आसपास डब्बे रखें हैं रखे हैं पन्नियों में पैक रखे हैं साड़ी वगैरह।